यह बोहोत अच्छा हरा-हरा दिख रहा है। दूर तक --

एगो लेडिस जे भाषण दे रही है। एगो जेंट्स है ।